और सामने की तरफ और भी बहुत सारी चीजें हैं।

जो यहां पर रखी इसमें एक हरी मिर्च भी रखी हुई है।

एक लोहे की है लकड़ी की है और रैक भी पड़ी हुई है वहां पे उस पे भी फाइल हैं।

और इधर की तरफ जो है एक सेह बहुत सारा सामान रखा हुआ है कैलेंडर लगा है ऊपर की तरफ लाइटें लगी हुई हैं।

सामने की तरफ बहुत बड़ा गार्डन है और इसमें जो है गुलाब के पेड़ और बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

और किनारे-किनारे से सौ पीस के पेड़ लगे है और अंदर की तरफ भी बहुत सारे उस उन पेड़ों की कटिंग हो रखी है खजूर के पेड़ भी हैं और उन पे पेंट हो रखा है लाल--

और भी बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं और फूल पेड़ --

यहां पर अ दो तीन दुकानें हैं और यहां पर एयरटेल का भी सिम की दुकान है।

ऊपर की तरफ पंखे भी लगे हुए हैं चार पांच और यहां पर--

यहां पर एक मेडिकल स्टोर है अंग्रेजी दवाखाना लिखा हुआ है यहां पर--

और यहां पर बहुत सारी अअबहुत सारी दवाइयां हैं जैसे और भी सामान भी रखा है जैसे बच्चों के हगीज हैं।

किराने की दुकान है और यहां पर बहुत सारा सामान है।

स्कूल का कोई प्रोग्राम हो रहा है गांव का स्कूल है और यहां पर जो है।

और सबने ड्रैस पहन रखी है कुछ बच्चे यहां खड़े हैं और बहुत बच्चों ने टोपा लगा रखा है।

एक लेडीज़ है जिसने मैकप कर रखा है और बाल खोल रखे हैं।

और यहां बहुत सारे गमले हैं हर तरीके के शोपीस के--

एक पार्क है और ये चिड़िया घर है शायद और यहां पर जो है एक हाथी बना हुआ है।

अगिटार हैं और हर तरीके के गिटार मिलले मिलेंगे।

अम्म और कुछ बैलून लगे हुए हैंनीले और सफेद कलर के--

पार्क है और ये एक पार्क है और यहां पर जो है बहुत सारे झूले हैं अंह सी_सा वाले भी झूले हैं और सामने की तरफ भी--

और वहां पेे सूरजमुखी के बड़े बड़े पेड़ भी लगे हैं।

ये एक बहुत बड़ी मेज है और उस पे जो है ट्रे रखी है ब्लैक कलर की और उसमें चार जो है--

लैग पीस रखे हैं जिसमें अ अः बेसन लगा के तले हुए हैं और उसके पीछे सिल्वर फॉल लगा रखा है और एक कटोरी है उसके अंदर चटनी है--

ये एक सरकारी बिल्डिंग है और यहां पर ये स्कूल है।

यहां पर बहुत बड़ा खेत है पीछे में वो पूरा का पूरा यहां पे गार्डन हैय--

और उसी के अंदर पाइपों वाला जो अम स --

आ पर एक वाइट कलर का केक है और उसपे जो है हार्ट बने हुए हैं रेड कलर के और स्टिक पे भी लगा के उन्होंने गाड़ रखा है और एक फूल बना रखा है बीच में--

कार की दुकान है यहां पे इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं।

अपर एक स्टेशन है और उसपे यहां पर ट्रेन खड़ी हुई है कुछ लोग हैं जो ट्रेन से उतरकर जा रहे हैं और कुछ चढ़ रहे हैं ट्रेन में--

एक लंबा सा हॉल है और यहां पर जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं।

और एक आदमी बैठ के यहां पे गिटार बजा रहा है और वहां पे कैमरा है।

और इसमें जो है हर एक केबिन के आगे जो है कुर्सी रखी है और वहां डायरी भिह ।

यहां पर एक क स्कूटी खड़ी हुई है और सामने की तरफ यहां पे अः पायदान पड़ा हुआ अै और इधर की तरफ दूसरा एक गेट व्य है किसी और के घर का--

यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये इसमें जो है ये युको बैंक है और यहां कुछ बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई है और कुछ एक कार खड़ी हुई है ।

यहां एक बहुत बड़ी अ यहां पर जूते और चप्पलों की दुकान है और यहां सैंडलें मिलती हैं।

और यहां पर जो है हरा सफेद और लाल रंग के बहुत सारे बलून लगे हैं बहुत ही ज्यादा।

और यहां कुछ कुर्सिए भी पड़ी हुई है ऊपर की तरफ पंखे लगे हैं।

यहां पर एक सरकारी बिल्डिंग है और यहां ये ऑफिस है और यहां पे हर ग हर कमरे के आगे ए_सी लगा हुआ है।

और एक बूढ़ा मार् बूढ़ी है औरत भी अंदर जा रही है।

और यहां पर साइकिल औ स्टैंड है यहां पर बाइक भी खड़ी है और ब--

यहां पर एक बड़ा प्लेग्राउंड है और यहां पर जो है वो बहुत से लोग बैठे हुए हैं।

और दो दो तीन तीन अःजगह पे यहां पे क्रिकेट खेला जा रहा ।

और यहां पर एक अम काटन में अ बर्फ रखी है और एक डिब्बा भी रखा है एक आदमी है जो यहां पर मास्क लगाए बैठा हुआ है।

और सामने की तरफ मीटर है और कुछ सामान भी रखा हुआ है बहुत सारे बर्तन --

प् और भी बाल्टी इधरि और तरह की ही बाल्टी हैं और यहां पे लाइटों वाले भी--

शादी समारोह का सीन है और यहां पर ज़ोय दुल्हन--

और दुल्हन ने एक हाथ से अपना घुंघट ऊपर की तरफ कर रखा है।

य केले रखे हुए हैं कच्चे और गुं गोभी रखी हैय --

और यहां तराब तरबूज रखा अननास रखा है सेब रखा है संतरा रखा --

ये बिल्डिंग है और ये सरकारी बिल्डिंग है और--

और ये स्कूल डांस क्लास है यहां पे स्कूल है और यहां पे बहुत सारी लड़कियां है छोटी छोटी--

और एक हरे रंग की कुर्सी रखी हुई है पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े डिजाइन दा--